ये एक बहुत ही बड़ा और अच्छा घर है ।

खाने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है इस होटल में हम लोगों को खाने में और बहोत लोग भी आते हैं इस होटल में खाने के लिए बहोत ही बड़ा --

ये क्रिकेट का मैदान है और यहाँ हम लोगों को क्रिकेट खेलने में बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही बड़ा मैदान है।

बहुत ही अच्छा लगता है क्रिकेट हम लोगों को खेलने में इस मैदान में और बहुत सारे बच --

बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगता है। इस स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं।

जब की यहाँ जिम करने में बहुत ही अच्छा लगता है हम लोगों को और हम लोगों को जिम करना चाहिए जिम करने से शरीर फिट और स्वस्थ रहता है।